यहाँ पे एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमे बहुत सारे पैकेज रखे हुए है कुछ बॉक्स भी रखे हुए है और एक टप भी रखे हुए दिखाई दे रहे है जिनका कलर ब्लू है।

नीचे टाइल्स बिछी हुई दिखाई दे रही है और कुछ पेड-पोधे भी दिखाई दे रहे है पे मकान भी दिखाई दे रहा हैजी--